इसका कलर वाइन है इसके ऊपर एक--

डायमंड दिखा हुआ दिखाई दे रहा है.

उगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सी कुर्सियां और सोफे लगे हुए नजर आ रहे हैं.

प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है।

महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई--

यहां पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है.

बिल्डिंग के आगे बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं।

पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं.

इसके पीछे नीला आसमान भी नजर आ रहा है.

यहां पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

की बाइक र बाइक रखे--

एल_सी_डी का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है.

आसमान लाल दिखाई दे रहा है.

यहां पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

इस बिल्डिंग का नाम मोबाइल सर्विस सेंटर लिखा है।

इसके बाहर एक बाल्टी रखी हुई है.

यहां मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है.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

इसकी दीवारों का कलर वाइट नजर आ रहा है।

पीछे दीवारों की सजावट ब्लैक दिखाई दे रही है.

और वह मछली बेच रहा है।

उसने ब्लैक कलर की स्वेटर पहनी है।

आगे एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है.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

स्कूटी का कलर वाइट नजर आ रहा है और दो वाइट ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है.

इसके सामने से बड़े-बड़े बिजली के खंबे नजर आ रहे हैं.

और बहोत सी बिजली कि तारे भी--

यहां बच्चों की टॉय शॉप दिखाई दे रही है.

साथ में ही दीवारों का कलर --

कपड़ों की शॉप दिखाई दे रही हैं।

इसके अंदर तीन-तीन मंदिर है.

यहां पर मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है.

और यहां पर मुझे बहुत से सामान--